यह एक मस्जिद की तस्वीर हैं जहां पर बहुत सारे लोग है उसे बाते कर आपस मे आर इसलिए लोग है जो बाइटे हैं।

और इस रोड को ऊपर ब्रिज बनी हुई है ब्रिज पर लाइटें लगी हुई है आस पास में एक दो पेड़ है।

ये एक फोटो कॉपी की दुकान है लेमिनेशन वगेरा होता है और भी चीजे जैसे फॉर्म वगेरा भर सकते है इसके आसपास मे दुकान है और घर वगेरा भी है यहाँ पर है अ दुकान है जो बंद है।